यहाँ पर एक दुकान जैसी दिखाई दे रही है जिसमें एक दुकान पर सटर लगी हुई है और एक दुकान खुली जैसी दिखाई दे रही है और यहाँ पर --

बहुत सारे पेड़ वगैरा भी दिखाई दे रहे है और यहां आगे की तरफ भी बहुत सारे घास पेड़ भी दिखाई दे रहे है और यहां पर एक खंभा जैसा भी दिखाई दे रहा है।

और यहां पर ऊपर एक टंकी रखी हुई है और नीचे ब्लू - ब्लू सा दिखाई दे रहा है।

और यहां पर एक --

यहाँ पर एक बड़ा सा घर जैसा दिखाई रहा है यहाँ पर ऊपर की तरफ फैन वगेरह भी दिखाई दे रहा है।

अ आगे की साइड एक डी.पी. जैसी दिखाई दे रही है खंभा वगैरा दिखाई दे रहे है बडे़-बड़े ट्रीज वगैरा दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर एक रास्ता जैसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर बहुत सारी स्कूटर और बाइक वगैरह दिखाई दे रही है और एक रिक्शा भी खड़ा हुआ है।

है कुछ लंबी-लंबी से डोरियां जैसे दिखाई दे रही हैं यहां पर आगे की तरफ व्हाइट कलर का बोर्ड पोस्टर जैसा दिखाई दे रहा है और यहां पर --